और दो मंदिर है और ऊपर छत टीन की बनी हुई है साइड में भी टीन लगी हुई है।

बहुत सारी तारें और साइड में बहुत सारे खंभे पड़े है।

उसके ऊपर किताबें रखी हुई हैं एक लैपटॉप भी है।

जिसमें बहोत सारी टेबल लगी है जिन पर खाने की बर्तन रखे हुए हैं।

जिसमें बहुत नीचे बहुत सारी लकड़ी की बल्लियां सेंटरिंग का सामान दिखाई दे रहा है।

यह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसके बरामदे में बहुत सारी टाइले लगी हुई है।

इसमें ट्रेन होकर गुजरती है।

रोड़ी भी पडी है पास में और टीन की छत है इसमें।

और पन्नी में कुछ सामान है जो मेज के ऊपर रखा हुआ है और बहुत सारे बच्चे लाइन से खड़े हुए हैं।

जिसके नीचे एक बहुत अच्छा फ्लोर है जिसकी छत में बहोत लाइटे लगी हुई है डिजाइन से।